जीस गार्डन में बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे पौधे पेड़ वगैरा लगाए हुए हैं।

जैसे डंबल्स ट्रेडमिल्स व पंचिंग बैग और भी बहुत सारी मशीनें।

और उसी चर्च के आगे छोटी छोटी घास भी--

यहां पे बहोत सारे स्वेटर ट्राउजर्स टी शर्ट टंगे हुए दिखाई दे रहे है।

उसी मंदिर के बाहर हमें बहुत सारे लाल कलर की लगी हुई झंडे दिखाई दे रहे हैं।

जिस घर का कलर ऑरेंज है और उसी के बगल में हमें एक बहुत ही घना और बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य मे हमे एक तालाब दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमें सब्जी मंडी की एक तस्वीर दिखाई दे रही है।

उसी के पीछे दो साइकिल भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस दृश्य में हमें एक बगिया दिखाई दे रही है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स को बड़ा किया जाता--

इस तस्वीर में हमें एक रूम दिखाई दे--

इस दृश्य में हमें बहोत सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

इस ढाबे के बाहर बहोत सारे फोर व्हीलर दिखाई दे रहे है।

इस दृश्य में हमें एक मकान दिखाई दे रहा है।

जहां का बेंच का कलर ब्लू है और अंदर के वोल का कलर वाइट है।

इसमें बहुत सारे टेबल और चेयर भी देखने को मिल रहे हैं।

जो की नैनो है और बहोत सारे स्कूटी और--